यहाँ एक खेत दिखाई दे रहा है एक पेड़ दिखाई दे रहा है ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं खेत में फसल लगी है वो दिखाई दे रही है।

टर लगे हुए दिखाई दे रहे है एक साइड मे दीवाल दिखाई दे रही है दीवाल पे जो कागज लगा है वो दिखाई दे रहा है अंदर टेबल दिखाई दे रही है ।

यह सिन्दूर से कुछ मूर्ति है भगवान की वो दिखाई दे रही है उसके सामने तीन मूर्तियां दिखाई दे रही है पाट दिखाई दे रहा है पाट पे मूर्तियां --

यहाँ सामने बिल्डिंग बनी हुई है वो दिखाई दे रहा है एक मैदान दिखाई दे रहा है वहाँ छोटे छोटे से पेड़ लगे हुए दिखाई दे रही है छोटे छोटे से घास दिखाई दे रही है एक डॉग बैठा हुआ दिखाई दे रहा है ।

खड़ा है एक्सरसाइज कर रहा है वो दिखाई ऊपर लाइट दिखाई दे रही है नीचे रेड कलर का ये ब्लैक और रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है वो दिखाई दे रहा है उसके पीछे पोस्टर लगे वो दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे गाड़ी का शोरूम दिखाई दे रहा है बहुत सी गाडियां दिखाई दे रही है पीछे बाइक का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है फ्लावर दिखाई दे रहे है ऊपर --

पीछे दीवाल दिख रही है ऊपर बादल लगी दिखाई दे रही है और एक स्ट्रेट लाइट दिखाई दे रही है नीचे टाइल्स दि --

दीवाल दिख रही है दीवाल में डिज़ाइन बनी हुई वो दिख रखी है ऊपर विंडो दिखाई दिख रही है एक बल्ब लगा हुआ दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पीछे दीवाल दिख रही है दीवाल में बहुत सारी विंडो दिखाई दे रही है बहुत सारी मशीन रखी हुई दिखाई दे रही है एक टेबल लगी हुई दिखाई दे रही है एक--

यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं | एक माइक दिखाई दे रहा है | एक जेंट्स बैठा हुआ दिखाई दे रहा है उसके पास एक माइक रखा हुआ है | इस --

स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है | इसपर कारपेट बिछा हुआ दिखाई दे रहा है | मालाएं दिख रही है कपड़ा बिछा हुआ दिख रहा है ।

दिखाई दे रहा है एक ग्लास रखा हुआ दिखाई दे रहा इधर बोउल रखा हुआ दिखाई दे रहा है उधर भी एक बोउल रखा हुआ दिखाई दे रहा उसके अंदर एक चम्मच है एक कटोरी रखी हुई दिखाई दे रही है ।